इस इसको समझने के लिए थोड़ा सा किसी ऐसे आदमी की जरुरत होगी जो ये भाषा पढ़ सकता हो साइन बोर्ड पर गिलास लगा हुआ है नीली कलर की वो लगी हुई है--

अगल बगल के लेंटरो से लेंटर दिखाई दे रहे हैं। बगल पर पिलर बहोत बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं जिन पिलर पे काम हो रहा है।

बड़े दो तालाब हैइसमें लोग मछली पालन करते हैं सिंघाड़ा वगैरह खेती करते है इसमें समर सेबिल से पानी भरा गया है मछली का बीज डाला गया है।

गांव का सीन है जहाँ पर सूरज सुबह सुबह निकल रहा है। हरयाल हरी-हरी फसल खड़ी हुई है।

सामने एक दीवाल बनी है। एक तालाब भी है और पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं। सुबह सुबह का सीन है। चार सवा छे बजे का टाइम है।

यह एक मंदिर का सीन है यहाँ के बगल पे ओवर ब्रिज बना हुआ है और सामने ब बोहोत बड़ा ग्राउंड खाली है।

ये एक स्कूल का सीन है। इसमें बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है इसमे गार्डन भी निकला हुआ है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते है। ये मल्टिनॅशनल स्कूल है।